होटल के बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया हैं जिसपे बादल लाईन होटल मेराल गढ़वा लिखा गया है।

आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

प्रस्तुत छवि में बहुत सारी इमारतें दिखाई दे रही है इमारतों का रंग सफेद है।

इमारत के बाहर बहुत सारे चार पहिया वाहन एवं दो पहिया वाहन खड़े हैं।

सारे सिलाई मशीने बहुत ही आधुनिक है एवं एक सिलाई मशीन बहोत पुराना है।

कमरे में एक अलमीरा भी दिख रहा है अलमीरा में बहुत सारी सामनें रखी गई हैं सारी सामनों को डब्बे में बंद किया गया है।

दिखाए गए छवि में एक बालकनी का दृश्य दिखाया गया है।

बालकनी में एक हरा पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

सफेद रंग की लाइटें भी जल रही है जो दुकान को और भी जगमगा दे रही है।

साइन बोर्ड में न्यू विश्वकर्मा गैराज लिखा गया है।

गैरेज में बहुत सारे लोहे की धातु की चीज नजर आ रही हैं।

वाहन के पास एक व्यक्ति खड़ा है एवं एक लाल रंग का मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहा है।

प्रस्तुत छवि में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं लोगों ने अपने अपने प्रकार की मैट बिछाई हुई है।

इमारतो के आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

में कुछ इमारतें दिखाई दे रही है।

पुलिसकर्मी के आसपास बहुत सारे लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं।

सामानों को डब्बे में बंद कर कर रखा गया है।

बच्चे स्कूल ड्रेस में है एक बच्चा फर्श पर बैठा हुआ है जिसने सफेद रंग की शर्ट एवम सफेद रंग का पैंट पहनना हुआ है।

टेबल पर एक काले रंग का लैपटॉप भी रखा गया हैं एवम् कुछ आर्टिफिशियल दांते भी दिखाई दे रही हैं।

मछली ने अपनी पूंछ ऊपर की ओर की गई है।

कपड़े बहोत रंग बिरंगे है दुकान में एक बड़ा सा काउंटर है जोकि सफेद रंग का है।

दीवारों पर एक आकृति भी मौजूद है जिस पर जी_एस कैलटेक्स लिखा हुआ है।

एक व्यक्ति मैदान पर खड़ा है जिसने अपने सफेद रंग का टी शर्ट पहना है वो अपना एक हाथ पे उधर इशारा करते हुए कुछ बता रहा है।

हॉल में एक मंडप सजाया जा रहा है जिसमे एक व्यक्ति लाल रंग की कुर्सी पर खड़ा होकर मंडप को सजा रहा है।

झरने का पानी काफी शीतल एवं साफ है।

आसपास बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।